कुछ बॉल्स रखी है जो की एक्सरसाईसेस बॉल्स है और बहुत अच्छा--

यह एक जिम है जो बहुत ही सफ़सुथरी दिख रही है यहा अलग अलग इन्स्ट्रूमेंट्स अलग अलग रोड्स दिख रही है यहा लोग आके डंबल्स से--

इनका बोर्ड लगा हुआ है इनकी दुकान है ये यहाँ पे सभी प्रकार के फ्रूट्स और सब्जी बेचते है।

यह फोटो एक पार्क की है जहा बहुत सुंदर नजारा है एक लड़की खड़ी है आसपास मे पेड़-पोधे लगे हुए है।